यहां कुछ घने पेड़ हैं पहाड़ों के पीछे बहोत बड़े बड़े पहाड़ हैं आसमान साफ है पहाड़ के पास कुछ बदले हैं नदी के बीच बीच में थोरी थोरी पानी है।

नदी के इस तरफ बहोत बड़ा पाहाड़ है जहां पर बहोत सारे पेड़ है नदी के उस पार बहोत बड़ी पाहाड़ है यहां सामने --

मूर्ति के ऊपर एक लाल रंग का छाता है जो कि बुद्ध जी की मूर्ति को छाया दे रहा है बुद्ध जी की मूर्ति के सामने एक बहुत लंबा सा पिलर है।

यह एक रूम है एक सिस्टर बहुत सारे बच्चों को देख रही है बच्चे सभी खड़े हैं बच्चों के सामने डेस्क है डेस्क के ऊपर फेविकोल है।

बैनर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्कूल के अंदर का घर का रंग पिंक है।

यह एक रूम है रूम के दीवारों और छतों को सफेद रंग से पेंट किया गया है रूम के फ्लोर को टाइल से बनाया गया है सफेद रंग के दरवाजे के सामने दो कपड़े के मैट हैं।

लोगों के सामने एक छोटा सा एक्सिस बैंक का ए_टी_एम है इसके ऊपर मैं बैनर का रंग लाल है दीवारें पिंक कलर की है।

टेबल और चेयर काठ से बनाई गई है सामने एक बेसिन है जिसका रंग सफेद है बेसिन में एक डेटॉल हैंडवाश है ऊपर एक नल है।

सभी दुकानें बंद है नीचे एक बाइक पार्क है एक लड़का स्कूटी पर बैठा है एक गाड़ी है जिसका रंग सफेद है।

पीछे कुछ पेड़ हैं सामने में एक सीढ़ी है एक गाड़ी पार्क है।

अंदर एक घर है घर की दीवारों का रंग लाइट ब्लू है ऊपर में टीन है अंदर में टैंकर है।

टीना से बनाया गया है घर के अंदर एक पोस्टर है पोस्टर में लिखा हुआ है एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स ।

यह एक दुकान है ये दुकान में कपड़े बेचा जाता है दुकान के दीवारें सफेद रंग की है।

यह एक शटर है जो आधी खुली हुई है शटर का रंग लाल है नीचे एक लाल रंग की मैट बिछाई गई है सामने इस जूता का एक पेड़ है।

दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है अंदर बहोत सारे चेयर्स और टेबल्स है अंदर एक लड़का लैपटॉप चला रहा है उसके सामने एक गिटर है।

सफेद रंग के पट्टियों से घर को रोड से बनाया गया है जिसको ब्राउन कलर की पेंट दिया गया है कार्डबोर्ड का रंग ब्राउन है।

ये मेबो मे स्थित है दीवार का रंग सफेद है उपर रॉड लगाए गए हैं।

गेट का रंग ग्रीन है अंदर बहुत आलीशान घर है घरों का छत का रंग लाल है घर के दीवारों का रंग ग्रे कलर का है।

टीचर ये देख रहे हैं पीछे की दीवार में बहोत बड़ी बड़ी ग्रील लगाई गई है दीवार का रंग लाल और सफेद है आगे कुछ चेयर्स है।